मेरी मम्मी वगैरह देवरिया जाती है तो ओ और मै देखता हूँ मैं ले जाता हूँ मम्मी को छोड़ने के लिए यहीं पे बहुत ही सही जगह है मतलब।

ये जो जगह दिख रहा है। ये है सब्जी मंडी के आस-पास की जगह है ये और यहाँ पे लोग जाते हैन मतलब सब्जी सामान वगैरा खरीदने जो कि अन्न के सामान है।